ये एक तालाब है जो बहुत ही गंदा दिख रहा है इसमे बहुत गंदगी है यहां पर बहुत सारे कचरे है ये बिलकुल भी साफ नही है।

उम्म सामने में एक पोस्टर दिख रहा है जिसमे एक महिला की तस्वीर रही है जिसने बहुत सुंदर बॉडी बनाया हुआ है कुछ लोग आईने मे अपनी तस्वीर ले रहे हैं| और यहाँ का पूरा कलर पीले रंग मे ---

ये दफ्तारी होटल पैलेस है ।